इसमें सरकने से बच्चों को बहोत मजा आता है। उन्हें इसलिए वो ये सरकते हैं इसपे बैठकर।

ये एक पेट्रोल टैंक है जिस पर की डीजल पेट्रोल सभी मिलता है।

ये एक ऐरोप्लेन है जो कि यात्रा करने के लिए होता है। जिससे कि हम दूर की यात्रा कर सकते हैं।

कॉफ़ी बहोत ही अच्छी होती है जिसे हमें पीना चाहिये जो ज्यादातर हमें सर्दियों में कॉफ़ी पीनी चाहिये।